लोहे से घेर दिया गया है। यहाँ पर बहोत सारी टाईल्स लगाये गए हैं जिससे यह सुंदर दिखें।

ऐ भी एक प्रकार का पत्थर का डिज़ाइनिंग और बहुत ही अच्छे कटिंग डिज़ाइनिंग किया गया है।

यह एक फिमेल जनरल वोर्ड है जहा पर नीचे एक रखा गया हुआ बहोत ही अच्छे प्रकार --

यह बेंच रखा गया है। जिस पर लेट कर यहाँ पर कुछ इलाज किया जाता है।

ऐ बर्फीले ड्रेस स्वेटर को पहेन कर के स्केटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं।

यह स्कुल या फिर कोचिंग का इमेज है। जहाँ पर तीन ब्रेंच लगे हुए है और बोहोत सरे बच्चे इस पर बैठे हुए हैं।

यह एक फल का दुकान हैं। जहाँ पर दो तीन बाल्टी में पानी भी रखे गए हैं।

जो कि काफी अच्छे फ़ास्ट फ़ूड वाले भैया यहाँ पर बोहोत ही अच्छा खाना खिलते हैं जो कि काफी अच्छा लगता --

और एक और वुड कलर की कुर्सी रखी गए हैं जो कि काफी अच्छा लाइटिंग वगैरा भी देखने में लग रहा है।

कुर्सीयां लगे हुये हैं। बहोत सारी कुर्सियां बहोत ही बैठे हुए हैं लोग --

ये बोहत ही बड़े बिल्डिंग्स का इमेज है। जिसपर ही सारे मंजिले बनाए गए हैं।

सुखी से बतिया रहे हैं और एक आदमी है जो कि मास्क लगाया हुआ है --